वो काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। इसकी लाइटिंग वगेरह फिटिंग इसको कालीन है जो की रेड कलर की वो भी काफी अच्छे से इसको डेकोरेट किया है। आप देख सकते हो --

यहाँ पर बैठने की भी जगह है। ये काफी अच्छी जगह है। सामने यहाँ बिल्डिंग भी देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा ख़ूबसूरत लग रही है बिल्डिंग ।

तो आप ये देख सकते हो इस बस में पेसेंज़र --

हेल्लो दोस्तों आप देख सकते हो जो यह टेक्टर है ये टेक्टर का शोरूम है। यहाँ पर टेक्टर में ले जाते हैं। यहाँ हर वैरायटी का आपको टेक्टर देने देखने को मिल सकते हैं।

आप देख सकते हो जो ये जो मंदिर है। जो काफी पुराना मंदिर है।

तो इसलिए इन्होंने इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ वा है। नीचे शादी हो रही है तो अब --

हेल्लो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो उत्तर प्रदेश है यहाँ से ये उतर प्रदेश की गली की की गई है।

यहाँ कार में गड़बड़ी है जो उसको ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर कार की रिपेयरिंग की जाती है जो कि यहाँ कार को रिपेयर करने --

खाने का जो भी ऑर्डर करते हैं उसकी फोटो निकलवाई गई है। आप देख सकते हो इसमें आप पेटीएम भी कर सकते हो फ़ोन पे भी कर सकते हो।

जो यहाँ पर यह ककड़ी वगेरह बेगन वगेरह रखी गई है यह ऑफर मिल सकते है आपको --

गिलकी हैं गाजर है ऊपर यहाँ पर जो सब्जी मंडी है।